सामने में दो कुर्सी भी लगाई गई है।

एक स्कूल का दृश्य दिया गया है यहां पे दो कार लगे हुए हैं।

यहां पे दो गेट भी दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान का दृश्य दिया गया है यहां पे एक काउंटर दिखाई दे रही है।

सामने में कुछ कुड़कुडिया दिखाई दे रही है जो की मिक्चर वाला है।

जोकि रंग बिरंग का जल रहे हैं यहां पे एक व्यक्ति भी दिखाई दे रही है।

यह एक पार्क का दृश्य दिया गया है जो कि यहां पे बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।